बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

और एक तराजू भी रखा हुआ है इसमें--

पीले रंग का बोड लगा हुआ है।

जहां पर कुछ लड़के खेल रहे हैं।

दिख रहा है इसके दरवाजे शीशे से बने हुए हैं।

उसके पास कुछ मकान बने हुए हैं।

खिड़की में पर्दे भी लगे हुए हैं स्लेफ पर बहुत सारा सामान रखा है।

ये सड़क काफी चौड़ी और लंबी हैं।

सड़क किनारे काफी गंदगी मची हुई है यहां--

ये तस्वीर एक अस्पताल की है यहां पर बहोत सारे पेशेंट --

पंखे भी चल रहे हैं और बहुत सारे--

एक बड़ी ट्यूब लाइट भी लगा रखी है।

लोहे के बहोत सारे पोल भी लगा रखे है।

ये तस्वीर एक चर्च की है। यहां पर चर्च की इमारत बहोत बड़ी है।

यहां एक तराजू भी रखा हुआ है।

और बड़ा फ्रिज भी यहां है।

और यहां रात के समय तस्वीर ली गई है।

दीवार पर बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक दुकान की है।

दुकान मे एक सीढ़ी भी रखी है।

ये तस्वीर एक पार्क की है।

यहां पर बहोत अच्छे पौधे और पेड़ भी हैं।